यहां काफी सुंदर सजावट है बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां एक ऑफिस है इस ऑफिस में काफी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं।

यहां एक होटल है इस होटल में एक प्लेट पे नॉन वेजिटेरियन चिकन रखा है।

और यह आदमी पोल के पास खड़े हैं।

यह सर्विस सेंटर है यहां पर सारी चीजें ठीक होती हैं जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती है।

यहां पर मयूर जग रखे हैं और लाल हरे रंग का--

इसके अंदर बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है इंडियन --

यहां पर एक हीरो होंडा का शोरूम है।

यहां एक नदी है इस नदी में ढेर सारा पानी है इसके आस पास बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

छोटे छोटे हिरण के बच्चे भी हैं और प्यारी घास--